और नीचे साइड पे घास लगी हुई है नीचे काफ़ी पत्थर पड़े हुए है बड़े बड़े ऊपर की साइड आसमान दिख रहा है।

और उसके पास एक गेट लगा है लोहे का जिस पे ताला लगा हुआ है पीछे पेड़ दिखाई दे रहे है साथ में कुछ पत्तियां दिखाई दे रही है।

और कांच के साइड में रैक बने हुए है जिसमे कुछ क्रीम्स रखे हुए है एक एल.ई. डी. भी दिखाई दे रही है कांच में ऐ.सी नजर आ रहा है।

यहाँ पर कपड़ो की दुकाने है और यहाँ पे बच्चो के लेडीजो के सब के कपड़े है काफी कलरफुल दिख रहे है और यहाँ पे डम्मी --

और लाल कलर के ही पर्दे लगे हुए है सफ़ेद कलर की दीवारे दे रही है एक कुर्सी रखी है यहाँ पे --

बच्चे खड़े हुए है जिन्होंने मास्क लगा रखे हुए है और काफी गाडी है बिजली का बड़ासा खम्बा है।